डांस करत हे पीछे तरफ पोस्टर भी लगीस हे।

यहाँ हरा-हरा पेड़ दिखत है लाल रंग में और दीसत है का ची --

अउ फिर आदमी - उदमी कोई नइ हैं।